और एक अपने काम का अपने कामकाज में लगे हुए हैं लगता है बच्चे जैसे पेंटिंग कर रहे हैं और फूल बना रहे हैं फूल बना रहे हैं। ये बेगूसराय जिले के अंतर्गत --